ये सैलून है यहाँ पर सब लोग अपने बाल कटवाने आते हैं यहां पे सब अपने डिजाइन का बाल कटवाते हैं और सब अपने-अपने डिजाइन से बाल कटवाते है और यहां पर नाई बाल सबका काटता है।

ये एक ये एक नेशनल पार्क हैं। यहाँ पे सभी लोग घूमने आते हैं अपने परिवार के साथ और यहाँ पे बहुत सारे मस्ती करते हैं।

और ऐसे प्लेस पे हमें भी जाना चाहिए और फुल मस्ती करनी चाहिए तो आपको --

और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसा पार्क में आपको जा के घीचाना चाहिए फोटो और ये कितना अच्छा लुकिंग दे रहा है इस फोटो का। ये हाथी का सूढ़ भी बहुत मस्त है।

ये यहाँ पे एक अच्छा सा सोफा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे सोफा का बिक्री हो रहा है और ये सोफा बहुत अच्छा दिखने में लग रहा है। इस पे पेंट हुआ है और ये पॉलिश भी हुआ है।

और ये होटल में सभी चीज पिज्जा बर्गर मिलती है और यहां पे देख सकते हैं जैसा की एक आदमी यहाँ पे खा रहा है।

ये यहाँ पे एक कपड़े का दुकान है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहां पर कपडा है यहाँ पर ढेर सारे कपड़े हैं यहाँ पर लाल पिला ब्ल्यू सभी रंग का यहाँ पर कपड़ा है और यहाँ पर कपड़ा बहुत अच्छा अच्छा कपड़ा दिख रहा है यहाँ पर एक दुकान है ।

और यहाँ पे सिर्फ महिला लोग ही आ सकते हैं यहाँ पे और ये विद्यालय सिर्फ महिलाओं के लिए है और ये बड़हिया में पड़ता है।

यहां से बहोत लेक है और यहां पे एक लेख में --